अंगने में एक छोटासा खाट भी लगा हुआ है।

पीछे की ओर एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे पेड़ पौधे और हरियाली नजर आ रही है।

कई सारे कस्टमर और लोग दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में कई सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक डॉक्टर कुर्सी पर बैठकर पर्ची लिख रहा है और उसके टेबल पे कई सारी अलग अलग तरह की दवाइयां रखी हुई हैं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

इस तस्वीर में एक गैस पाइप लीकेज दुकान के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

अंदर की ओर कई सारे हार्डवेयर के सामान रखे हुए हैं तथा कुछ तेल के डब्बे भी रखे हुए हैं।

यह एक मंदिर के अंदर का दृश्य है सामने एक सफेद रंग का टी-शर्ट पहनना पुजारी नजर आ रहा है।

एक और लड़का दिखाई दे रहा है जिसके कंधे पर बैग टंगा हुआ है।

बैक पे कांच के पीछे कई सारे ग्रोसरीज और शैंपू तेल वगैरा रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में खून जांच घर के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

पीछे की ओर डिजाइन दार कटे हुए कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

आस पास अन्य दुकानें मौजूद हैं और ऊपर नासीम एंड संस लिखा हुआ है।

एक गमछा पहले व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मौजूद बादलों का मौसम साफ है।

अंदर की ओर एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है।

यह एक कम्प्यूटर दुकान के अन्दर का दृश्य है।

प्लेट के ऊपर हरे रंग का बड़ा सा पत्ता रखा हुआ है जिसमें डोसा और सांभर की चटनी रखी हुई है।

आसपास सफेद रंग के कई अन्य बोरे मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

सभी कुत्तों के खाने के समान अलग अलग कंपनियों के हैं तथा वह एक लकड़ी के रैक पर रखे हुए हैं।

यह एक ब्यूटी पार्लर के अंदर का दृश्य है।